साइकिल भी है और यहां पे फ़तरे लाइट के बड़े-बड़े यहां पे --

बैठने के लिए बेंचेज भी रखे हुए हैं और यहां पे--

बेड पे ओडने के लिए कंबल तकिया भी रखा हुआ है आजू बाजू यहां पे बहुत--

बील्डिंगा दिख रहे हैं और बहुत सारे झाड़ा भी यहां पे है।

एजुकेशन दिया जा रहा है यहां पे नीचे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहां पे बात--

गंदी भी है बड़े-बड़े यहां पर--

और यहां ऊपर लाइट का झोमल छोड़ा हुआ है।